और इस गेट का कलर ब्लैक ब्राउन है।

और यहाँ बाजु में दीवाल के ऊपर पर टाइल्स रही है दीवाल का कलर येलो है और यहाँ पर लाइट्स लगी है।

और यहाँ पे एक घर भी है बहुत बड़ा खम्भे भी लगे है यहाँ पर।

बहुत सारे लोग भी है अलग-अलग तरीके की दुकान भी है यहाँ।

यहाँ पर नदी तालाब है।

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है पास में झाड़ी भी है और खुला आसमान भी है।

ये एक बहुत बड़ी एक नदी है।

और यहाँ पहाड़ भी बहुत दूर--

घा पीछे पूरा साफ खुला हुआ है और यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं गमले में।

और यहाँ पर छत डल रहा है।